यहां पे मुझे एक सुंदर सा बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है घर सा बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे एक भगवान की मूर्ति दिखाई दे रही है जो बालाजी महाराज की मूर्ति है उसके ऊपर लिखा हुआ है।

दुकान दिखाई दे रही है दुकान पे काउंटर लगा हुआ है काउंटर के ऊपर फूल मूर्तियां भगवान की मूर्तियां पड़ी हुई नजर आ रही है।

मुझे यहां पे एक सामने बेड दिखाई दे रहा है जिसकी चद्दर बहुत अच्छे से बिछाई गई है उसपे दो तकिया लगाया हुआ दिखाई दे रहा है।

एक व्हाइट कलर का परदा लगाया हुआ है अलमारी के पास वो दिखाई दे रहा है दो चेयर कुर्सियां डली हुई है वो दिखाई दे रहा अलमारी दिखाई दे रही है।

अलग-अलग लाइटें लगी हुई हैं जो व्हाइट कलर में दिखाई दे रही है कुर्सी के पास जंगला दिखाई दे रहा है वो जंगला भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

जिसपे लड़का बैठा है एक लड़का आदमी बैठा है जिसके पीछे दो औरतें बैठी हैं एक टेंपो हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है वह नजर आ रही है एक यम_ए_आर_टी का नाम है वो दिखाई दे रहा है।

टोपिया लगी हुई है गोल गोल टोपिया दिखाई दे रहे हैं पीछे आदमी खाना खाते हुए दिखाई दे रहे --

ऊपर एक कुर्सी रखी हुई है जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है कुछ आदमी अपना काम कर रहे हैं कुछ गुलदस्ते रखे हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं।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

चालीस परसेंट होता है बहोत सारी मोटरसाइकिल एवं स्कूटीयां भी दिखाई दे रही हैं यहां पर एक पूल भी बना हुआ है स्तंभ भी है।

इस तस्वीर में मुझे बुत ही अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है बहुत ही अच्छी तरक अच्छी प्रकार से खींची हुई तस्वीर है।

चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है बाहर एक सफेद कलर की गाड़ी भी--

और बादल भी दिखाई दे रहा है जो सफेद है बादल तीन प्रकार के होते हैं पक्षा में कपासी में छतरी में एक वर्षा में।

खींचने वाले ने क्या हुआ तस्वीर खींची है बहुत ही अच्छी तस्वीर है यहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं बैलून भी है गुब्बारे भी है।

अच्छा दृश्य देखने को मिल रहा है बहोत ही अच्छी फोटो खींची गई है यहां ऐसा ही बसाइ सर्विकचर होना चाहिए यहां पर बहुत ही बड़ा ऑफिस --